यहाँ पे खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे झाड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमे कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा है।

बस है यहाँ पे हमे टायर दिखाई दे रहा है यहाँ हमे रोड दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमे साइकिल दिखाई दे रही हैं मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं कर दिखाई दे रहा हैं बिजली के खंभे और तार दिखाई दे रहा हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा हैं छोटी छोटी --

यहाँ पे हमें एक बस स्टेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है कुछ लोग फ़ोन पे बात कर रहे है यहाँ पे हमें एक आदमी चलता दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें एक बहोत बड़ा बिजली का तार दिखाई दे रहा है आसपास झाड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे है।

नदी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर हमे पेड़ और पौधे के परछाई दिखाई दे रही है आसपास हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमे झाड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमे काला काला दिखाई रहा बाहर हमे एक आदमी का सिर दिखाई दे रहा है जिसने टोपी पहनी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमे--

मे सफेद कलर का चैनल गेट दिखाई दे रहा हैं आसपास हमे दीवार दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमे कुछ झाड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमे के सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है चढ़ने के लिए यहाँ पे हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा है जहाँ भी हमे सफेद सफेद दिखाई--

इस तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर हमे एक चर्च का सिम्बल दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे गॅलरी दिखाई दे रही है।